किसी का जन्‍मदिन मनाया जा रहा है।

ते सजावट है बहुत सारे लोग हैं। नोइसेक

लग रहा है कि ऊपर में सेंटिग हो रहा है। सरिया लेबर सब बहुत लगे हुए हैं।

सरिया बाँध रहे हैं एक आदमी खड़ा है --